यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नए सलून का उद्घाटन किआ जा रहे है उस -उस उद्घाटन में काफी लोग शामिल हुए हैं आप देख सकते हैं यहा चार पांच लोग है और दूकान को काफी अच्छे से सजाया गया है बैलून से सजाया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पस --

आप देख सकते है ये एक ऑफिस है यहाँ पास काफी लोग बैठे आये है और अपने काम को लेकर डिसकस कर रहे है यहाँ पास एक लैप लैपटॉप रखा हुआ है और काफी सारी बुक्स रखी हुई है काफी सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रखे हुए है यहाँ पास आप-आप देख सकते है।

यहां पास एक देख सकते हैं यहां पास एक एअरपोर्ट है जिसका नाम है बालूरघाट एअरपोर्ट और कई सारे लोग यहां पास हैं कई सारे गाड़ियां यहां पास हैं और जो की अपने हवाई यात्रा से अपना यात्रा करने वाले है काफी सारे लोग यहां पास है।

यहाँ पस आप देख सकते हैं एक पोस्ट बैंक है और यहाँ पस दो बुजुर्ग महिला बैठी हुई है और एक बाइक है। --